गेस्ट हाउस का नजारा है जोकि देखने में बेहद अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। बोहुत ही अच्छा नजारा है। देखने में भी अच्छा लग रहा है।

यहां किसी गेस्ट हाउस है और यहां पर चेयर डली हुई जो कि गेस्ट लोगों के बैठने के लिए डली हुई और यहां का नजारा बोहुत ही अच्छा है। डेकोरेशन यहां की बोहुत ही --